यह एक तस्वीर है इस तस्वीर में कुछ टेम्पल्स दिखाई दे रहे है।

जो दीवार पे लगी हुई है कुछ सुखी डंडियाँ दिखाई दे रही है कुछ हरेभरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

डिब्बे दिखाई दे रहे है जिसमें अलग अलग प्रकार के चीजे रखी हुई है कुछ स्टैम्प्स दिखाई दे रहे है।

ये एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है इसके आस पास हरे भरे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है।

और कुछ रिलिंग्स भी है जो लोहे के बने हुए है और खिडकियों पे शीशे भी लगे हुए है।

जिसे बहुत सारी तार जुड़ी हुई है।

और उस गाडी के पीछे बहुत सारे पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है और कुछ घर भी दिखाई दे रहे है।